यहाँ दो बाइक खड़ी हुई है एक नीले रंग का और एक काले कलर का और दोनों बाइक में हेलमेट --

मोहल्ले जैसे लग रहा हैं जहाँ--

सामने तरफ़ भी हरियाली दिखाई दे रही--

जो उबड़ खाबड़ लग रहे हैं।

पार्किंग में एक कार खड़ी हुई है और दो बाइक खड़े हुए है। कार के सामने बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए--